और रर उसके पास में मिक्की माउस दिखाई दे रहा हैं ।

ओर नीचे गाड़ियाँ त लल लगी हुई दिखाई दे रही है उसके पास में एक और दुकान दिखाई दे रही हैं ।

दुकान में किताबे दिखाई दे रही है और बाहर कि साइड बेड दिखाई दे रहा है।

और ऊपर की तरफ भी एक खिड़की दिखाई दे रही है और बादल दिखाई दे रहे।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

ओर ररर लाल कलर के पत्तेए का कुछ पौधा लगा हुआ नज़र आ रहा हैं ।

बादल दिखाई दे रहे है सामने एक टॉवर लगा हुआ नज़र आ रहा है कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है सामने कि तरफ सूरज--

और पीछे भी एक पीले कलर के शर्ट पहने एक लड़का खड़ा है एक बच्ची खड़ी हुई नज़र आ रही--

काँच के शोकेश में तीन मूर्तियाँ बनी हुई दिखाई दे रही है जो स्टील की बनी हुई नज़र आ रही हैं ।

एक माता जी की मूर्ति दिखाई दे रही है जो माता जी त्रशूल लेकर हाथ मे खड़ी है।

गाड़ी जाती हुई नज़र आ रही है और कुछ बस भी जाती हुई नज़र आ रही हैं ।

बगीचा दिखाई दे रहा है जहाँ पे छोटे-छोटे पेड़ भी दिखाई--